लिबर ऑफिस माथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्युटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
ग्रीक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना जैसे अल्फा बेटा थेटा और पी कोष्ठकों का इस्तेमाल करना द्विघाती समीकरण यानि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखना
चलिए सीखते हैं की कैसे मैथ का इस्तेमाल करते हुए ग्रीक कैरेक्टर्स लिखते हैं
इसके लिए चलिए सबसे पहले उदाहरण राईटर डॉकुमेंट जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था जोकि है mathexample1ओडीटी
ग्रे बॉक्स जिसमें हमने फोर्मुले लिखे थे उसपर डबल क्लिक करें
यह मैथ फ़ॉर्मूला एडिटर और एलिमेंट्स विंडो ओपन करेगा
चलिए फ़ॉर्मूला एडिटर के बोर्डर पर क्लिक करते हैं और उसको सही जगह ड्रैग और ड्रॉप करें
यह बेहतर दृश्यता के लिए राईटर विंडो को बढ़ाएगा
अब ग्रीक कैरेक्टर्स उदाहरणस्वरुप अल्फा बेटा थेटा और पी गणितीय फोर्मुलों में समान है
किन्तु एलिमेंट्स विंडो में हम यह कैरेक्टर्स नहीं पाएँगे
हम प्रतिशत चिह्न के आगे अंग्रेजी में कैरेक्टर का नाम इस्तेमाल करके इन्हें सीधे लिख सकते हैं
उदाहरणस्वरुप पी लिखने के लिए हम फ़ॉर्मूला एडिटर में केवल160pi लिखते हैं
छोटे कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर का नाम छोटे अक्षरों में लिखिए
उदाहरणस्वरुप अल्फा को छोटे अक्षर में लिखने के लिए टाइप करें160alpha या160beta बड़े अक्षर का कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर का नाम बड़े अक्षरों में लिखिए
उदाहरणस्वरुप गम्मा को बड़े अक्षर में लिखने के लिए टाइप करें160GAMMA या160THETA ग्रीक कैरेक्टर्स डालने का एक और तरीका है कि टूल्स मेनू से कैटालॉग इस्तेमाल करें
सिम्बोल सेट में ग्रीक चुनें
और सूची में से ग्रीक अक्षर पर डबल क्लिक करें
ग्रीक अक्षर के लिए मार्क अप पर ध्यान दें जो है अल्फा जोकि सूची के नीचे दर्शाया गया है
अतः इस तरह से हम एक फ़ॉर्मूले में ग्रीक अक्षर प्रयुक्त कर सकते हैं
अन्य ग्रीक अक्षरों का मार्क अप जानने के लिए सिम्बोल्स कैटलॉग का अन्वेषण करें
चलिए अब सीखते हैं कि अपने फोर्मुलों में कोष्ठक कैसे प्रयुक्त करते हैं
मैथ को फ़ॉर्मूला के संचालन के क्रम की जानकारी नहीं होती है
इसलिए हमें संचालन के क्रम को बताने के लिए कोष्ठकों का इस्तेमाल करना होगा
उदाहरणस्वरुप हम कैसे लिखें कि पहले एक्स और य को जोड़ें फिर उत्तर को 5 से भाग दें
हम लिख सकते हैं 5 ओवर एक्स य अब क्या यह वास्तव में वही है जो हम लिखना चाहते थे
नहीं हम पहले एक्स और य को जोड़ना चाहते हैं और यह हम एक्स और य के पीछे कर्ली कोष्ठकों को लगाकर कर सकते हैं
और मार्क अप ऐसे दिखेगा 5 ओवर xy कर्ली कोष्ठकों में अतः कोष्ठकों का इस्तेमाल फ़ॉर्मूले के संचालन के क्रम को निर्धारित करने में मदद करता है
चलिए सबसे ऊपर फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करके और सेव चुनकर अपने काम को सेव करते हैं
चलिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखते हैं
राईटर डाक्यूमेन्ट में हम कंट्रोल Enter दबाकर नये पेज में जायेंगे
चलिए लिखते हैंSolving आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंसर्टगटोबजेक्टग्टफॉर्मुला मेन्यू से मैथ लाते हैं
मैंने पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप किया है मैं इसे कट और पेस्ट करूँगा जिससे समय की बचत होगी
तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम हल करेंगे एक्स स्क्वेयर्ड 7 एक्स 3 0 इसको हल करने के लिए हम स्क्रीन पर दिखने वाला क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ आ एक्स स्क्वेयर्ड शब्द का गुणांक है ब एक्स का गुणांक है और सी कांस्टेंट है
और हम फ़ॉर्मूले में आ के लिए 1 ब के लिए 7 और सी के लिए 3 रखकर इक्वेशन को हल कर सकते हैं
अतः सबसे पहले चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें हल करना है उसका मार्कअप लिखते हैं
सबसे पहले हम इंसर्टगटोबजेक्टग्टफॉर्मुला मेन्यू से मैथ लाते हैं
फॉर्मेट एडिटर विंडो में निम्न प्रकार से मार्क अप लिखते हैं एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 7 एक्स प्लस 3 0 चलिए बेहतर प्रत्यक्षता के लिए खाली लाइनों को डालते हैं इसलिए दो न्यूलाइन्स डालते हैं
Enter दबाइए और लिखिए क्वाड्रेटिक Formula फिर Enter दबाइए
एक जटिल फ़ॉर्मूले को हल करने के लिए अच्छा तरीका यह है कि फ़ॉर्मूले के सबसे भीतरी एलीमेंट से शुरुआत करें
और फिर इन एलीमेंट्स के आसपास हम अपना कार्य कर सकते हैं
अतः हम सबसे पहले सबसे भीतरी स्क्वेर रूट फंक्शन लिखेंगे
और मार्क अप है स्क्वेयर रूट ओएफ ब स्क्वेयर्ड 4एसी कर्ली कोष्ठकों में
अगला हम उपरी व्यंजक में माइनस ब प्लस ओर माइनस जोड़ेंगे और उनको हम कर्ली कोष्टकों के भीतर रख देंगे
कर्ली कोष्ठक के एक और सेट को जोड़ कर हम उपरी व्यंजक को अंश बनाएँगे
व्यंजक में ओवर 2आ जोड़िये
और अंततः शुरू में एक्स इक्वल्स जोड़िये
इक्वल टो चिह्न के आस पास दो लम्बी रिक्त स्थानों के साथ
और यह क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला है
इस तरह से हम जटिल फोर्मुलों को हल करते हैं और उनको भाग करके बनाते हैं
अगला चलिए बाकी टेक्स्ट को फोर्मुला एडिटर विंडो में निम्लिखित तरह से लिखते हैं
व्हेरे आ इस थे कोएफिशिएंट ओएफ थे एक्स स्क्वेयर्ड टर्म ब इस थे कोएफिशिएंट ओएफ थे एक्स टर्म सी इस थे कांस्टेंट
उसके बाद एक न्यूलाइन
और लिखिए वे कैन सोल्व थे इक्वेशन बाय सबस्टीट्यूटिंग 1 फोर आ 7 फोर ब 3 फोर सी उसके बाद दो न्यूलाइन्स
अतः प्रतिस्थापन सब्स्टिटूशन के बाद मार्क अप इस तरह से स्क्रीन पर दिखेगा अतः कोष्ठकों का इस्तेमाल करके हमने संख्याओं को समीकरण में रख दिया
ठीक है यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है क्वाड्रेटिक समीकरण को हल करने के बचे हुए स्टेप्स को पूरा करिये
दो नतीजों को अलग अलग दर्शाइए
एलिग्नमेंट्स और स्पेसिंग बदल कर स्टेप्स को फॉर्मेट करिये
जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो लम्बे रिक्त स्थान और नई लाइन्स जोड़ें
निम्नलिखित फ़ॉर्मूला लिखिए पी 314159 के समान या बराबर है अब हम लिबर ऑफिस माथ में ग्रीक कैरेक्टर्स कोष्ठकों और समीकरणों पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे ग्रीक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना जैसे अल्फा बेटा थेटा और पी कोष्ठकों का इस्तेमाल करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद